इस चौड़े रास्ते के दोनों ओर थोड़ी-थोड़ा हरियाली दर्शाई गई है।

इस जिम के अंदर मे व्यायाम करने के लिए तरह-तरह के मशीने लगाई गई है।

यह एक नदी का दृश्य है।

इस दुकान का नाम मानसरोवर लेखन सामग्री है।

इस नाव में दो नाव चालक दर्शाए गए हैं।

और कुछ लोग इमारत के अंदर दर्शाये --

और बाकी बैठे लोग सुन रहें हैं।

यह एक लड़को का छात्रावास का दृश्य है।

इस गाड़ी का अगला हिस्सा यानी बोनट को खोलकर दर्शाया गया है।

और इस मंदिर के मुख्य द्वार द्वार के बाएं तरफ मंत्र लिखे गए हैं।

भाग की दुकान का दृश्य है।

और इस चौक के बाई तरफ एक बिजली का मीनार दर्शाया गया है।

गणना यंत्र भी दर्शाया गया है।